एक ए_टी_एम है ए_टी_एम में पाच लोग खड़े हुए है तीन मशीने है और ए_सी लगी है ए--

एक फल की दूकान है जिसमे फल सब्जी रखी हुई है स्टील के चार पाच बर्तन है पीली हरी--

एक चर्च है चर्च मैं क्रॉस है इसमे जीजेस की फोटो स्टॅच्यु है।

नदी है नदी मे छे नाव है दो-दो के ग्रुप में लोग बैठे हुए है।

व्हाइट कलरकी --